मुझे यहां पर बहुत सामान टेबिल के ऊपर धारा हुआ दिख रहा है।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

मुझे यहां पर एक हरे कलर का झाड़ दिखाई दे रहा है।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

मुझे यहां पर कुछ खड़ी दिखाई दे रही है।

मुझे यहा पर एक पंखा दिखाई दे रहा है।

मुझे यहां पर एक वाइट कलर की बस दिखाई दे रही है।

मुझे यहां पर एक रेलवे स्टेशन दिखाई दे रहा है।

मुझे यहां पर एक गेट दिखाई दे रहा है।

मुझे यहां पर कुछ मछलियां दिखाई दे रही हैं।

मुझे यहां पर एक इंसान चलता हुआ जा रहा है।

मुझे यहां पर एक इंसान दिख रहा है।

मुझे यहां पर रानी लेडिस टेलर दुकान दिख रही है।

कुछ कवच के बर्तन एंड स्टील के बर्तन दिखाई दे रहे हैं।

मुझे यहां एक रेलवे स्टेशन दिख रहा है।

मुझे यहां पर जमीन पीले कलर की नजर आ रही है।

कुछ लोग दिखाई दे रहें हैं मुझे यहाँ पर--

मुझे यहां पर एक कार दिख रही है।

इसमें सारा सामान जमा हुआ दिख रहा है--